और पहाड़ के नीचे भी बहुत सारे पत्थल दिखाई दे रहे हैं।

और फोन पे का स्कैनर भी लगा हुआ हैं यहां पर।

यहां पर एक पुराना सा घर दिखाई दे रहा है घर के बाहर तीन चार आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

मॉल के अंदर बहुत सारे लाइट भी जल रहे हैं जोकि लाइट व्हाइट कलर का जल रही है।

और एक लेडिस भी दिखाई दे रही है जो की वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

और दो तीन टेबल भी दिखाई दे रहे है घर के अंदर में लोहा का खिड़की लगा हुआ है।

यहां पर एक बहुत बड़ा दुकान दिखाई दे रहा है दुकान के अंदर बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है जैसे चूड़ी रंगपाली जे सब दिखाई दे रहे हैं।

और स्कूल के बाहर बहुत सारे साइकिल भी दिखाई दे रहा है।

और एक मोटर साइकिल भी जा रहा है उसमें दो आदमी भी बैठा हुआ है।

और दुकान के बहार एक बैनर लगा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है पिचू मोबाइल --

पीछे लाइट जल रहा है और वाइट कलर का है।